पेड़ पौधे दिख रहे हैं जिसमें बहोत सारे डेस्क बैठने के लिए लगाए हुए हैं और बहोत सारे झूले भी लगाए हुए हैं जिसे बच्चे खेलते हैं।

इसमें बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं और पीछे लाइट लगा हुआ है।

खिलते हुए दिख रहें हैं और कुछ गुलाब के फूल निकलने वाले हैं।

दुकान के बाहर एक बुलेट खड़ा हुआ है।

आसमान का मौसम बहोत खराब दिख रहा है बारिश होने वाली है व--